यहां पर वाइट कलर के फूल--

दो तीन बाईकें और शटर के सामने एक साइकिल रखी हुई है और उसके सामने--

एक के स्टेशनरी की दुकान है जहां पर एक लड़का व्हाइट --

जिसमें एक दो कस्टमर दिखाई दे रहे हैं।

वहां पर एक टंकी भी दिखाई दे रही है

एक दो व्यक्ति के हाथ में चाय भी लिये हुये हैं।

ये एक कपड़ों की साप है जहां डमी में--

कुछ कपड़े लगे हुए हैं और बगल में--

उसने चश्मा को लगाया हुआ है यहां बहोत सारी बुक्स रखी हुई है।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

यस यहां पर एक सेंट्रल बैंक आफ इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है सामने बहोत सारी बिल्डिंग --

एक टेंपल टाइप का रैक टंगा हुआ है और बोर्ड के ऊपर एक वॉच लगी --

दिखाई दे रहा है जिसमें बहोत सारी तार कई हुई है।

डेकोरेशन किया गया है और ऊपर झुमर भी लगा हु--

खड़ा हुआ है और घर के पीछे कुछ पेड़--

और बीच में एक रेड कलर का सोफा लगा हुआ है जिसके अगल बगल खूब सुंदर सजावट की गई।

लाइनिंग दीवाल बनी हुई है जो वाइट और ब्राउन मे है।